अर एक सफेद रंग की स्कूटी भी ये पर अर ना खिड़की पर काले रंग की जालिन लगीं।

अर उंका पिछाड़ी बिटिन मैं हरयूं डाला भी दिखेणा।